भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

इसमें खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है टायर का रिंग भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है बहुत सारे स्त्री लोग जो है पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहा है।

एक आदमी हुए दिखाई दे रहा है।

और इसमें बहोत सारे कपड़ा दिखाई दे रहा है जो की अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है।

और सभी का माथा में टीका भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो है डिस्को लाइट भी दिखाई दे रहा है।